व्हाइट कलर का रस्सी है।

डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जैसे ग्रीन कलर ग्रे कलर ब्लैक कलर व्हाइट कलर पिंक कलर --

पीछे में बाइक भी दिखाई दे रहा है और जो फन वाला है वो जो ग्रे कलर का है।

साइड में एक ग्रीन कलर और रेड कलर का एक छत दिखाई दे रहा है।

और अलमारी लोग भी दिखाई दे रहे हमक --

उसमें बहुत सारा बेंच और चेयर लोग रख के है सुंदर से।